बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है पूरे में ग्रीनरी दिख रही है।

और ये बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा सामने हमें एक घर भी देख रहा है और ये नीचे ग्रीनरी बहुत सुंदर लग रही पाइप भी पड़ा हुआ दिख रहा है।

अब की बारी सैप सोल की बारी ऐसा लिखा हुआ सामने हमे दिखाई दे रहा है एक हमे महिंद्रा कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ छत ढलता हुआ दिख रहा है बहुत सारे मजदूर यहां पर काम करते हुए--

देख रहे है जो अपने सिर पर दो प मजदूर है वो टो--

और उस साइड हमें बहोत सारे पेड़े लगे हुए दिखाई दे रहे है। ये बकरियां--

के सोफा कुशल पडदे बेड शीट पीलो आर्टिफीसियल ये--

खेल का मैदान दिख रहा है जिसमें हमे बहोत सारे--

ये ग्रेटी कलर से कलर किया हुआ है साइड में एक कार भी खड़ी हुई दिख रही इसका थोड़ा सा पहिया दिखाई दे रहा है।

ब्ल्यू कलर का है वहां पर एक दो बाइक भी खड़ी हुई दिख रहीं हैं कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

और मशीनें सिलेंडर सी रखी हुई हैं यहां पर दिखाई दे रहें है बहुत सारे--

जो की रेड कलर के हैं और यहां पर तीन चार आदमी बैठे हुए देख रहे हैं चेयर पर जो एक आदमी खड़ा भी दिख रहा है।

मस्जिद की पेक है ये जहां पर वाइट कलर --

ये कश्मीर की पिक जैसी लग रही है क्योंकि यहां बहोत सुंदर पहाड़ दिख रहा बादिया दिख र--

बहोत बड़ा होटल टाइप की दिखाई दे रही है।

कांच का गेट है जो कि खुला हुआ है एक वाइफ है जो कि शायद पोछा लगा रही है।